यीं तस्वीरम दिख सकदन की हमथे रेलवे की छिन की पटरी दिखेण लगी हमथे इक पटरी पर रेलन दिखेण लगी रेल फर सफेद रंग कर्यु रेल पर हमते खिड़की दिखेण लगी दरवाजा दिखेण लग्या।

ईं तस्वीर मा हम देख सक्दन की हम तें एक जंगल दिखेण लग्युं ये जंगल का बिच बिच मा हम ते एक छोटु सा पाणी की नहर दिखेण लगीं जे पर पाणीन भर्युं।

झील पर हम तें घाम की चमक दिखेण लगीं झील का सामनि हम तें एक पहाड़ दिखेण लग्युं जे पर हम तें डाला बुर्दा दिखेण लग्यां।

माकन का बगल मा हम तें फूलन दिखेण लग्यां समणी हम तें लाल दिवार दिखेण लगीं दीवार का समणी हम तें डाला दिखेण लग्यां दिवार का पैथर भी डाला दिखेण लग्यां।

तस्वीर मा हम देख सक्दन की सामने हम तें एक नदिना दिखेण लगीं ईं नदी पर हम तें कुछ लोगन दिखण लग्यां।